यहाँ पर जैसे की मैं देख पा रहा हूं बहुत सारा फील्ड है और घर बना है ठीक है। और ब --

यहाँ एक पहाड़ी सी बनी है। गेट बना हुआ है आने जाने का रास्ता और ये घास लगी हुई है। इत्यादि जैसे --

और काफी अच्छी जगह है होटल माया पैलेस ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी है। होटल माया पैलेस बहुत ही दो-तीन खंबे की बिल्डिंग भी है ठीक है भाई लोग --

यहाँं पर भी बहुत बड़ा स्कूल बना है। --